यहाँ पर हमें दो आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं एक आदमी फोन पर बात कर रहा है और एक आदमी जेब में हाथ डाल कर खड़ा--

दोनों फोटो क्लिक करवा रहे हैं इनके पीछे बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया गया है बहुत ही प्यारा सजाया गया फूलों से सजाया गया अंदर नीचे लाल कलर का कपड़ा बिछाया गया और अंदर की तरफ लोग जाते हुए दिख रहे अंदर बहुत ही लाइटिंग की गई है जो बहुत ही प्या--